यहां पर कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

बेंच बहुत बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं।

कुछ स्वेटर दिखाई दे रहे हैं।

यही हैं सामने कुछ खिड़कियां दिखाई--

बहुत सारे पोस्टर दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारी लाइट्स लगी हुई है बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

यहां एक गाड़ी दिखाई दे रही है और एक आदमी दिखाई दे रहा है।

कुछ टंकियाँ दिखाई दे रहीं हैं और एक जंगल दिखाई दे रहा हैं कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहा हैं।